उसमे लाल बल्ब जल रहे है कुछ आदमी सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

उअप्र आकाश खुल्ला दिखाई दे रहा है ये तो दो तीन फरको में दिखवाई दे रहा है नीले रंग का हैं।

जो बहोत लम्बी- चौड़ी बिल्डिंग है डबल मंजिल बनी हुई दिखाई दे रही हैं।